और यहाँ कुछ टॉवर और कुछ बिजली के खम्बे भी दिखाई दे रहें हैं दूर --

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर की है और यहाँ पर लाल कलर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है स्टील की रेलिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक वाटर पार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष और बच्चे --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

और यहाँ पर कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं।

अ पंचर ठीक करने वाली पाइपलाइन भी दिखाई दे रही है।

चार पहिया वाहन भी दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने लाल कलर का बेग --

गिट्टी दिखाई दे रही है एक बोरा दिखाई दे रहा है एक बाल्टी दिखाई दे रहा है एक तसला दिखाई दे रहा है पीछे की ओर।

और बहुत सारी घास भी दिखाई दे रही है।